और यह हॉल में पुल गेम चल रहा है और यहां लड़के पुल खेल रहे हैं दो लड़के व्हाइट कलर की शर्ट पहेन कर --

पेड़ में बहुत सारा टेप चिपका हुआ है और बाहर हरे कलर का पेड़ भी लगा हुआ है।